कई तरह के पत्थर भी है देख सकते है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां का व्यू देख सक --

फुटबॉल भी है कई तरह के बैठने का भी है देख सकते हो कई तरह के पेड़ भी हैं हरा भरा सीन आए हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है।

देखिए यहां पर झरना है कई तरह के आदमी है।